बहुत सारी लाइट्स भी दिख रही है।

ढोलक बजाते हुए हारमोनियम बजाते हुए दिख रहे हैं।

एक क्रिश्चियन आदमी भी दिख रहा है।

स्कूटर भी यहां पर दिख रही है।

बैंक से पैसे निकलवाने के लिए आए हुए हैं।